हमे लगता है यह अन्य यात्री है यह बस का इंतज़ार कर रहे है और यह बहुत ही अच्छा बस अड्डा बना हुआ है।

एक एक व्यक्ति ने मास्क लगा रखा है। मास्क का कलर पीला है और यहाँ पर एक ई-रीक्शा भी खड़ा हुआ है। यह लाइट से चार्ज होता है।

और यहाँ की बिल्डिंग भी बहुत अच्छी बनी हुई है और यहाँ पर कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं। यह पेड़ बहुत हरे भरे और बहुत बड़े-बड़े हैं।

हम इस फोटो में देख पा रहे है यह हमे लगता है यह एक होटल है और उसकी एक पार्किंग भी बनी हुई है यह बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज्यादा अच्छी होटल है।